और कहीं-कहीं पर कुछ जगह खाली है और पूरी घांस है।

और सामने ब्लू कलर का पोस्टर है टेबल पे बोहोत से कपड़े रखें हैं।

यहां पर एक हॉल है जो पूरा वाइट कलर का है।

ऑरेंज ब्लैक पोस्टर भी लगे हुए हैं और बहोत से लोग यहां पर--

हुआ है ऊपर की तरफ पूरा ग्रीन कलर का नेट बना हुआ है जिससे ये नर्सरी तैयार--

यहां पर कोई भी नहीं है आगे एक ट्रक खड़ा है जहां दूसरा कोय--

कुछ रूम बने हुए हैं और एकदम हल्की ला--

और भी सारा सामान यहां पे काफी खूबसूरत ये कांच के--

यहां घास लगी है कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ--

और कुछ पौधे भी हे एक छोटा सा बैनर लगा है जोकी ब्लू कलर का--

यहां पूरा जंगल है जिसमें बहोत सारे घने पेड़ लगे हुए हैं सामने भी--

इस पर वाइट ब्लू पोस्टर लगा हुआ है खिड़की है गेट है।

सजाया गया है कुछ झूमर और लटकन सामने की तरफ लटक रहे हैं।

आस आप दीवार व्हाइट है ऊपर की तरफ व्हाइट लाइट लगी है।

रेड कलर का पोस्टर लगा दुकानों के सामने काफी बाइक और स्कूटी खड़ी हैं कार भी खड़ी हुई है कुछ कार रोड से भी--

घड़ी भी है और जिसमें कुछ रेड कलर के स्टंट्स --

यहाॅं पर एक व्हाईट कार है सामने एक पार्क है जिसकी--

इन्होंने व्हाइट कलर की छोटी चटाई बिछाई है और इनके हाथ में पानी की बॉटल्स है।

इसपर बहोत सारी साड़िया निकाल कर एक व्यक्ति दिखा रहे है।